जिसमें छोटा छोटा घास लगा हुआ है ऊपर में तार दिख रहा है और इधर साइड में भी नीचे में पत्ता सुखा--

ब्लू कलर है पिंक है और बैग लिए हुए हैं और चैन गेट लगा हुआ है।

एक लंबा सा बांस भी लगा हुआ है जाली भी लगा हुआ है जिसके अंदर हिरण लोग हैं।

यह एक बाहर का दृश्य है जहां पे बहुत सारा ही शॉप है यहां पे एक लैंटर से--

और पिंक कलर का पेंट किया हुआ है यहां पे टेबल देख रहा है काउंटर दिख रहा है।

एक व्यक्ति जोकि चेयर पे बैठे हुए है।

रेड है और यहां पे टेबल भी लगा युवा है और खूबसूरत सा डिजाइन में है और यहां पे कंबल भी रखा हुआ है चादर--

और यहां पे बोटल भी रखा हुआ है बेड के पास डोर --

व्हाइट भी है बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट भी है यहां पे।

और कंबल भी है और बेड के ऊपर गद्दा भी बिछा हुआ है ब्लैक कलर का।

यह एक स्कूल का दृश्य है जहां पे बहुत सारी लड़कियां रेले बनाकर खड़ी हैं मैम भी हैं सर भी हैं।

यह एक घर का दृश्य है जहां पे बहोत ही खूबसूरत सा घर है।